सुविधाएं है और यहाँ पर बुकिंग करा कर सब चले जाते है यहाँ बुकिंग एडवांस में लिया भी जाता है।

कोचिंग सेंटर है यहाँ पे.एस.सी व्यापम की जो भी तैयारी है कराई जाती है और यहाँ बहुत अच्छा कोचिंग दिया जाता हैं।